रेड कलर की बॉटल दिख रही है कांच कलर कांच की कुछ बॉटल जैसी दिख रही है फिर ब्लैक कलर की दिख रही है।

ब्लू कलर की उनका मुंह हाइड है और एक लड़की ने साड़ी पहनी है एक लाइट ब्लू उनके मुंह हाइड है और एक लड़के ने फॉर्मल पहना है उनका मुंह हाइड है और एक लड़के ने शर्ट पहना है उनका मुंह हाइड है।

फिर अंदर एक शंकर भगवान की मूर्ति है शंकर भगवान के सिंघ लगी हुई है।

और एक यो लाइट बिल वाला जैसा है और एक लीव दिख रहा है। एक गाड़ी दिख रहा है। तीन सीढ़ी चढ़ने का --

ये एक ब्राउन कलर का मट मट्टी जैसा दिख रहा है एक ब्लैक कलर के पत्थर जैसे दिख रहे है।

बहोत बड़ा कैफे हैं उसके अंदर दो कुर्सी है दो टेबल है और एक फायर सेक्शन है और कांच है।

फिर एक टाइल्स जैसा है वाइट कलर का स्क्वायर टाइप जैसा है फिर उसमें लाइनिंग है फिर एक बीच में बहुत रस्ता टाइप जैसा दिख रहा है।

खेती के अंदर के पानी बोतल दिख रहे फिर ब्लू कलर के ढक्कन दिख रहे फिर बहोत बड़ा मगजमज दिख रा हे --

बंदर के पूछ बहोत लंबे दिख रहे उस एक खड़ा है एक एक सोच रहा है।

और साम एक बाजू में रास्ता है उसके अं बाइक है और एक घर जैसा है उस पे अ ट्रायंगल जैसा घर है।

उसमें लिखा एक ऊपर बारी है बारी खुली हुई है स्टील की और एक वाइट कलर का पूरा कर्ज कर टाइप जैसा है आई थिंक --

फिर एक रेड कलर की स्कूटी खड़ी है ब्लैक कलर की स्कूटी खड़ी है ब्लैक कलर की बाइक कली है और एक दवाखाना है।

मंदिर के ऊपर ऑरेंज कलर के झंडे लगे हुए हैं फिर बहुत सारे सजाया गया हुआ है लाइटिंग की सर्कल दिख रहे फिर एक पाइप जैसा दिख रहा है।

एक ट्रिज के पास है खा एक डंडा जैसा लगा हुआ है उसके नीचे एक डंडा है फिर एक बाजू में ट्रिज है।

एक बच्चे लोग का ग्राउंड जैसा खेलने का है उसके अंदर एक लसरपट्टी जैसा एक रेड कलर का--

और पर्दे है ब्लैक एंड व्हाइट कलर का और एक पाउच है ग्रीन कलर जैसा एक रूम मेट जैसा रखा हुआ है।

और बाजू में सोफा है ब्लैक कलर का उसके नीचे ऑरेंज कलर का लाकड़ी लगा हुआ है तीन और एक बहोत सारे पोस्टर्स लगे हुए नए नए और एक तकिए दिख रहे --

एक रास्ता है रास्ता के अंदर बोहोत सारा साइड पे बोहोत सारे डंडे रखे हुए और एक नाइन सेवन फाइव कर के कुछ व्हाइट कलर का लिखा है।

और एक फूज दिख रहे नीचे बॉटल जैसा है और एक टब जैसा और एक वाइट कलर का और बाजू में ब्लू कलर का सोफा जैसा है।

एक दुकान है उसमें घर कलर करने का पेंट है पेंट कलर का बहोत सारे डिब्बे दिख रहे हैं और भगवान की एक मूर्ति दिख रही --

आजू बाजू में एक द दीवार लगा हुआ है और उसके ऊपर एक एक राउंड जैसा टाइप है उस पे टूट गया है।